टेबल लगे हुए हैं डोर हैं।

सारा सामान इसमें दिख रहा है मूर्ति है।

दो व्यक्ति दिख रहे है हेलमेंट लगा के एक बिना हेलमेंट के है।

बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पक्षी हैं।

टाइल्स वगैरा लगा हुआ है बहुत ही--

यहां पे बहुत सारी बाइक लगी हुई है होंडा की।

रेड गेट है।

साइड में दिख रहा है लोहे का लंबा सा लगा हुआ है लोग काम कर रहे वर्कर लगे हुए हैं काम के लिए।

तार भी लगे हुए हैं तीन यहाँ पे ऊपर में डेकोरेट किया गया है व्हाइट व्हाइट ।

लोहा का यहां पे व्यक्ति भी खड़े हैं यहां पे पेड़ लगा हुआ है।

डी_जे रखे हुए हैं उनके पीछे एक व्यक्ति भी हैं जो कि ब्लैक टी शर्ट में हैं ब्लैक बाइक है।

अंदर में टेबल भी रखे हुए हैं।

नीचे रोड है दो ठो दरवाजा है जाने का सीढ़ी भी दिख रहा है।

यहां पे बाइक का चक्का भी है लोहे का दिया हुआ है स्टील में--

यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है जहां पे सुधा पार्लर है।

पोल भी है तार भी है बांस है।

व्हाइट टेबल पे रखे हुए है।

यह एक स्कूल का दृश्य है जहां पे बहुत सारे व्यक्ति हैं।

यह एक घर का दृश्य है जहाँ पे बहुत सारा पेड़ है।